जो कि यहां पर बहुत सारे बुक्स अलग इलेक्शन से बना कर--

बहोत सारी अलग अलग वस्तुएं रखी हुई है यहां पर कुछ प्लास्टिक और कुछ घरेलू वस्तुएं भी रखी गई है।

यह दुकान दो मंजिला है आसपास बहुत सारे दुकानें भी बनी हुई हैं जो दो मंजिला है ये फोटो रात में ली गई है।

आस पास कुछ पेड़ पौधे लगे हैं सामने खुला मैदान भी दिखाई दे रहा है यहां पर छायां के लिए स्टील के छत बनाई गई है।

और बास में कुछ लाइटे भी जल रही है यह फोटो रात के समय की है यहां पर हवा भरने का एक यंत्र भी लगाया गया है।

और बहोत सारे और सामान भी लगे एक जनरेटर भी लगा हुआ है जो इस जे पेट्रोल पंप को लाइट देने के लिए काम आता है।

एक कैलेंडर भी रखा हुआ है पीछे खिड़कियों पर पर्दा लगाया गया है बहोत सारी प्लास्टिक की कुर्सियां रखी है जो दो कुर्सियां काले रंग की है दो भूरे रंग की है।

हॉल दुकान की च चारों दीवारों पर लकड़ी का फ्रेम भी लगाया हुआ है कुछ लाइटें भी जल रही है।

यह गेट स्टील का बना हुआ है जिस पे काला रंग किया हुआ है अंदर बहोत सारे बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर लड़कियां और लड़के आए हुए हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो दो या तीन मंजिला है पास में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

जहां पर घर के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

कुछ डस्टबिन भी रखे गए हैं और यहां पर बहुत लंबी एक बिल्डिंग बनाई गई है जो कि रेलवे स्टेशन की ऑफिस दिखाई दे रहे हैं।